मुझे यहां पुरानी मिल लग रही है उसमें बहुत सारी लाइटिंग लग रही है जो लाइटिंग है सिल्वर और --

मुझे यहां एक ऑफिस जैसा दिख रहा है उसमे गोल्डन कलर के सोफे दिख रहे है और पीछे दो विंडो दिख रहे उसमे ब्राउन कलर का--

मुझे यहां शिक्षा मंदिर दिख रहा है जिसको स्कूल बोलते हैं और वो वाइट और ब्लू कलर का है।

इसपे ब्राउन कलर की सीढ़ियां है और उस उसके बाद जो वे है जाने का--

एक शादी की रिसेप्शन जैसा रखा हुआ है उसमें बहोत सारा खाने की डीशे लगाई हुई है।

और अच्छे सिल्वर कलर के वो वो नीचे --

मुझे यहां हॉस्पिटल दिख रही है और हॉस्पिटल में तीन चार बेड रगे हुए हैं जो वाइट कलर की चद्दर पछ बिछी हुई है तकिया है और--

काफी अंदर से अंदर दो क कांच के विंडो दिख रहे हैं।

मुझे यहां कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है जिसके पी नीचे बाहर कार खड़ी है जो आ रही है जो खड़ी है जो जा रही है और उसके अंदर--

मुझे काँ यहां पे सारी वो दुकानें दिख रही है जो बंद है और उसके सामने कार खड़ी है जो वाइट है कार एक ब्लैक है।

मुझे यहां गांव दिखाई दे रहा हैं और गांव में कुछ बाट रहें हैं।

और श शोरूम का जो क कांच है।

मकान के बाहर ग्रेट गेट के बाहर एक औरत दिख रही है उसमें उसने एक बच्चे को हाथ में लिया हुआ है।

मुझे ये एक मस्जिद जैसा दिख रहा है और मस्जिद के बाहर जैसे --

मुझे यहां एक क्लासिस दिख रही है और क्लासिस में ख सारे बच्चे--

मुझे ये जिम्नास्टिक दिख रहा है जिम्नास्टिक का पूरा फेमन मैन्युफैक्चर दिख रहा है।

और वाइट कलर की जिन साइकिल है।

मुझे ये एक होटल रिसॉर्ट जैसा लग रहा है उसमें एक ब्रा अ स्विमिंगपुर है और स्विमिंगपुर का पानी एक दम साफ है उसमें एक टाइल्स लगी हुई है।

बहुत सारे व्हीकल्स दिख रहे हैं जो फीते जैसे हैं।

मुझे ब्राउन कलर का एक अ विंडो दिख रहा है डोर दिख रहा है।

मुझे ये पेड़ दिख रहा है बहुत सा बड़ा हुआ और उसके पीछे एक स्कूल दिख रही है और स्कूल के नी बाजू में--

मुझे यह सलोन दिख रहा है जो जेन्ट्स सलोन है।

मुझे ये रोड दिखाई दे रहा है और रोड में रोड के बाजू में ये शोरूम है जो अत्ता बना हुआ है।

और एक ही ग ड्रेस के यूनीफॉर्म पहने हुए काफी सारे बंदे खड़े हुए हैं।

मुझे ये पार्टी का ये दिख रहा है और पार्टी में--

मुझे यहां कांच का श रूम दिख रहा है जो अलग-अलग शेप में कांच बने हुए हैं।

स्क्वायर शेप के कांच दिख रहे हैं और एक राउंड कलर की डाल दिख रही है।

और अच्छे से जिन जिम कर रहे हैं।

और जो एक स्क्वैयर के स्क्वैयर के शेप में है और जो मंदिर के शेप में हैं।

मुझे ये म्यूजिक शो शोरूम दिख रहा है।

और ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है पूरा।

अलग अलग बैनर लगा हुआ है।

मुझे ये इलेक्ट्रिक शॉप दिख रही है उसमें अलग-अलग वैरायटीयास रखी है।